एक बड़ा- सा गोदाम है जिसकी छत के ऊपर शेड डाला गया है लोहे के बॉर्डर बनाये गए है और जमीन के ऊपर सिर्फ प्लास्टर है लोहे का समान रखा हुआ है यहाँ पर लोहे की जालिया रखी हुई है।

सभी बॉयसे खेल रहे है मज़े कर रहे है आसपास बड़े -बड़े पेड़ लगे हुए है धूप बोहोत तेज निकल रही है अ आसमान नीला हो रहा है सबने अलग- अलग रंग के कपड़े --

ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी घास लगी हुई है ग्रीन कलर की आसपास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं धूप निकल रही है नीला आसमान है बच्चे एन्जॉय कर रहे--

सामने एक बहूत बड़ा सा तालाब है उसके अंदर बहुत सारा पानी अ भरा हुआ है आ-- आ-- आसमान का अक्स उसके ऊपर पड़ रहा है जो की बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

एक बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पर कुछ निशान लगाए गए हैं वाइट कलर से आसमान नीला है बहुत तेज धूप निकल रही है सामने बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

कुछ लोग खेल रहे है ग्राउंड में आस-पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है उनके अंदर बहुत सारे खिड़की दरवाजे लगे हुए है सफेद कलर की बिल्डिंग्स को पेंट किया--

अब बहुत सारे पत्थर लगे हुए है और बड़े-बड़े छोटे-छोटे ऊपर जाने के लिए कुछ जीने है एक आदमी उन जीनों से चढ़के ऊपर जा रहा है।